एक अगरबत्ती भी लगी हुई है सामने बहुत सारी मोमबत्ती दिख रहीं है धुआं दिख रहा है।

कोई साड़ी पेहेन के खड़ा है ऊपर आसमान दिख रहा है वाइट कलर का टेंट है पास में एक एक्टिवा खड़ी हुई है।

फल फ्रूटस की दुकान नजर आ रही है | निचे एक डब्बा रखा हुआ है | पास में एक --

एक सफेद हरे कलर की बोटल दिख रही है कांटा दिख रहा है सामान तोलने वाला।

पार्क का फोटो है जिसमे कुछ झूले नजर आ रहे हैं | पीछे एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिस पे शेड लगा हुआ है एक ऊपर छोटा सा गुम्बद लगा --

शुभ दीपावली लिखा हुआ है जिसमें से अलग-अलग --

बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं एक आदमी दिख रहा है जो पीछे तरफ देख रहा है।